सीलिंग में एक बल्ब लगा हुआ है फैन लगे हुए है जो ब्लैक कलर के है तीन शटरें लगी हुई है जो ब्लू कलर के है यहाँ पर बहुत सारे काउंटर बने हुए है जो ब्लू कलर के है।

आर एक मॉल जैसा कुछ बना हुआ है| यहाँ पर सीडिया बनी हुई है जो इलेक्ट्रिक वाली है लाइट वाली| नीचे टाइल्स लगी हुई है जो क्रीम एंड ब्लैक एंड ब्राउन कलर में है। सा--

यहाँ पर बहुत सारा डेकोरेशन किया गया है। यहाँ के परदे लाइट ग्रीन कलर के है।